बुद्ध भगवान का मंदिर हेय इ मार्बल का बना हुआ है बहुत सुन्दर है देखने में बहुत अच्छा है और इ बोधगया में है।

डॉक्टरी पढ़ते है यहाँ पर सब लोग जैसे ऊपर खड़े है जन अ खिड़की वेंटीलेटर सब लगा हुआ है दरवाजा लगा हुआ है।